जिन्होंने ब्लैक सैंडो पहन रखी है एक बंदे ने व्हाइट सैंडो पहन रखी है जो दिख रहा हैं।

ई के ए के ए फोर टू एफ --

घर के लोग इधर कपड़े धुलवाने हैं या फिर घर के भी आ स --

और यह जगह है जहाँ कोचिंग वॉचिंग भी लगती है लगा हुआ है।

यहाँ का घर है ये किसी का और इधर एक बैनर लगा दिख रहा है।

आइडी जी विथ फाउंडेशन और --

इ या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस पे ।

एक केफिटेरिआ है और ये बहोत अच्छी जगह घूमने की जगह है इधर पे पेप्सी की बोटल दिख रही है ओर माउंटेन डीयु की बोटल दिख रही है बाहर कचरा दबेगा।

इनकी टोपी व्हाइट क्यों है मुझे ये नहीं पता समझ आया व्हाइट कलर भी है।